गेट की साइड में जो दीवार है उस पर कुछ बोर्ड लगी हुई है और नीचे लिखा है नो पार्किंग --

साथ में लक्ष्मी गणेश सरस्वती कार्तिक भी मौजूद हैं।

कुछ औरतें भी नजर आ रही है। एक आदमी भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में मुझे एक घर नजर आ रही है घर के अंदर तीन इंसान दिखाई दे रहे है जिनमें एक बच्चा भी है।

दो टेबल आठ चेयर और कुछ बर्तन --

इस चित्र में रेलवे स्टेशंस का प्लेटफार्म नजर आ रहा--

का सामने का हिस्सा शीशे का है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में एक दवा की दुकान नजर आ रही है जिसके अंदर बहोत सारी दवा रखी हुई है।